पीछे हमें कुछ-कुछ साड़ियाँ भी दिख रही है सूट वगैरह के कपड़े दिख रहे हैं। एक आदमी दिख रहा है काँच में जोकि बहुत ही गंदा दिख रही है ऊपर लाइट दिख रही है सफेद दिख रही है।

जेसा कि हम देख सकते हैं दो आदमी दिख रही है दोनों आदमी हमको चेक शर्ट में दिख रही है। चेक शर्ट में एक शर्ट जो की बहुत बढियां दीख रहा दूसरा चेक शर्ट लाइनिंग वाला --

जैसा कि हम देख सकते हैं कि सामने हमको कटिंग की दुकान दिख रही है। कटिंग की दुकान बहुत ही सुन्दर दिख रही है। कटिंग की दुकान में एक लड़का दिख रहा है। जिसने हम को जामुनी कलर का कपड़ा पहना हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने से फ़ूड ट्रैक का नाम लिखा है बोर्ड हुआ है। यहाँ पे दुकानें दिख रही है जो कि बहोत सारी दिख रही हैं।

जैसा कि हम देख सकते हैं। सामने कार दिख रही है। जो कि स्कॉर्पियो कार दिख रही है। जो कि सफ़ेद कलर की कार दिख रही है। जो कि बहुत बढ़िया कार दिख रही है।

जैसा की हम देख सकते हैं कि सामने नाव दिख रही है। नाव हमको बहुत ही सुन्दर दिख रही है। नाव हमको नीली कलर की दिख रही है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रही है।

सामने से हमको जो बोर्ड दिख रहा है जोकि बहुत ही अच्छा लग रहा है हरे-हरे बैग पड़े हैं जोकि बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं कुछ लोग दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर काम करते हुए दिख रहे हैं ऊपर छत दिख रही है जोकि पत्तरे की दिख रही है जोकि बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी --